इस फोटो में हम एक खुले मैदान को देख सकते हैं।

इस खुले मैदान के पीछे एक बड़ा सा पहाड़ भी है।

यह फोटो किसी रेलवे स्टेशन का है।

प्लेटफार्म पर काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बेंच और टेबल लगे हुए हैं।

बिल्डिंग के नीचे काफी ट्रैवलिंग वैन पार्किंग पर है बिल्डिंग के सामने एक गेट भी है।

दूर हमें एक सफेद कलर के घर को भी देख सकते हैं।

कुछ इंसान लड़के हैं कुछ बच्चे हैं तो कुछ महिलाएं हैं।

यह फोटो किसी रेस्टोरेंट का है।

यहां पर काफी अच्छे दिखने वाले सोफा लगा हुआ है।

इस हॉस्पिटल का वाल सफेद कलर एवं क्रीम कलर से बना हुआ है।

यहां पर सामने हम पानी के बॉटल भी देख सकते हैं।

यह फोटो किसी हॉस्पिटल क्लिनिक का है।

ऊपर ऐ_सी भी लगा हुआ है और ऊपर एक फैन भी लगा हुआ है।

यहां पर पास में ही एक ब्रिज भी है।

इनका नीचे का फ्लोर ग्रीन कलर का है।

ये महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पर एक स्कूटी में एक लड़की भी है।

इस फोटो में हम एक लंबी से घर को देख सकते हैं।

इस फोटो में हम एक लाल कलर के दुकान को देख सकते है।

इसका नाम जोएस पेट चॉइस है।

इस फोटो में हम स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को देख सकते हैं।

यह फोटो एक फार्मेसी का है।

ऊपर एक पंखा भी है।

यह बिल्डिंग क्रीम कलर का है।

यह फोटो किसी एक सुंदर से घर का है।

बहोत दूर हम एक पहाड़ भी देख सकते हैं।

इस रूम पे एक ए_सी भी लगा हुआ है।

जो की काफी सुबसूरत तरीके से बनाया गया है।